और एक आदमी ने बच्चे को गोद में उठाया है।

और दूसरे घर के अंदर कबर्ड के यहां पे कुछ कपड़े लगाए हुए हैं और एक दुकान भी दिख रहा है।

इसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना है और ब्लैक कलर की कैप पहनी है।

एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है रेड कलर की उसके बाजू मे रेड कलर का गेट है।